स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया है।

यहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है।

इस धर में एक टाकू लटका दिया जाता है ।

शिवजी के द्वारा गणपति का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था।

फायर द ब्रैड अनेक प्रकार की सैलून अनेक प्रकार के नेम ऑफ़ सैलून --

कॅश देके ले रहे हैं। इसमें एक गरीब है और एक थोड़ा दिखने में अमीर है।

और यहाँ पर सर्क काम हो रहा है। बड़े-बड़े बिल्डिंग बनाई जा रही है।